गेटgetवेरिएबल पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
गेट वेरिएबल वेरिएबल का बहुत ही उपयोगी प्रकार है इसका उपयोग आकारों के साथ अधिकतर सक्रिय वेबसाइट के लिए होता है जिसमें की क्लिकसक्षम बटन्स हैं
यह यूजर को भी दिखाई देता है आप अपने पेज पर इस की तरह कुछ भी देख सकते हैं
चलिए इस पर क्लिक करते हैं आप इसी तरह से कुछ देख सकते हैं जैसे प्रश्न चिन्ह
उदाहरणस्वरूप मानिए कि name equals to alex कुछ समान आपके ऐड्रेस बार में दिखाई दे सकता है
आपने and होगा कुछ और भी उदाहरणस्वरूप your name equals to kyle
यह गेट get वेरिएबल है
वास्तव में यह क्या करता है यह एक html फॉर्म से जमा डाटा लेता है इसे स्टोरेज में रखता है जिसका उपयोग हमें करना होता है और यह केवल आपके ऐड्रेस बार में है
गेटget वेरिएबल की सीमाएँ होती हैं यह केवल 100 अक्षरों तक हो सकता है यह यूजर को दिखाई पड़ता है अतः यह पासवर्ड के लिए उपयोग करने के लिए ठीक नहीं है
अबइसका उपयोग करने के लिए आपको php में अन्य वेरिएबल्स की तरह इसे घोषित करने की आवश्यकता नहीं है
मैं कहने जा रहा हूँ एको फिर डॉलर चिन्हएक underscore अधोरेखा और गेटget
और वर्ग कोष्ठकों में आपको वेरिएबल का नाम लिखने की जरूरत है उदाहरणस्वरूप my name
यह सब मूलतः एको करने की जरूरत है अर्थात फॉर्म में क्या प्रविष्ट किया गया यद्यपि मेरे पास फॉर्म नहीं है मैं अभी भी इसकी नकल कर सकता हूँ
मैं क्या करता हूँ मैं a रखता हूँ और मैं कहता हूँ my name is equals to alex फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और डाटा दिखाई देता है
उसी तरह से मैं kyle लिख सकता हूँ या कोई अन्य नाम या वेरिएबल जो मुझे चाहिए
यह संख्याएँअक्षर या स्ट्रिंग्स हो सकते हैं
अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि गेट पद्धति का उपयोग करके फॉर्म कैसे जमा करते हैं
मूलतः मैं एक html पेज बनाने जा रहा हूँ
मैं एक फॉर्म रखता हूँ और फॉर्म का कार्य भी
यदि आपने पहले से html नहीं सीखा हुआ है तो इसके साथ काम करने से पहले इसे सीखना बहुत उपयोगी होगा
कार्य उसी गति में होने जा रहा हैजिसके साथ हम कार्य कर रहे हैं यह पद्धति गेटget के समान होने जा रही है क्योंकि यह वह पद्धति है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं
हमें एक इनपुट बॉक्स की आवश्यकता है और इसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है
मैं इसे my name कहने जा रहा हूँ यह वह वेरिएबल है जो कि दिखाई देने वाली है
हमें buzzer जमा करने की भी आवश्यकता है इनपुट में submitटाइप करेंclick here जैसे कुछ आसान वेल्यू रखें
इसे रिफ्रेश करें यह जैसा है वैसे ही छोड़ दें
मैं alex नाम टाइप करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यह यहाँ बदल गया है यह मेरा नाम दे रहा है जो कि यहाँ इस बॉक्स का नाम है और यह वह वेल्यू भी दे रहा है जिसे मैंने यहाँ टाइप किया है
तो अब मैं php में जो करना चाहता हूँ वह है इस वेल्यू को एको करना
मैं इस html के नीचे उद्धरण करना शुरू करुँगा php और html एक ही पेज पर समाविष्ट करना संभव है जब तक यह php टैग्स के मध्य नहीं है जब तक यह एक एको फंक्शनecho function में है
अब मानिए कि नाम डॉलरचिन्ह अधोरेखाunderscore गेटget के समान है
और my name में मुझे यह ध्यान रखना होगा कि यह इससे मैच होगा अन्यथा आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी
फिर केवल एको कहें और your या केवल hello और फिर name
चलिए इसे हटा देते है और फिर से शुरू करें
हमें पहले से ही hello मिला है
और एक if का उपयोग करके मैं ऐलेक्स टाइप करुँगा क्योंकि मैंने उसपर क्लिक किया है
इस प्रकार से ऐलेक्स प्रतीत होता है लेकिन अभी हमें एक समस्या है हमें hello मिला और फिर यहाँ खाली जगह पूर्णविराम के साथ हम उससे मुक्त होना चाहते हैं
आप केवल if name कहना क्योंकि हमें पहले ही एक लाइन मिल गई है हमें कर्ली कोष्ठकों की आवश्यकता नहीं है और नाम खुद मौजूद है अतः यह सही true है
यदि नाम में कोई भी वेल्यू नहीं भेजी गई हो तो यह स्वतः से false समझ लेगा इसलिए यह इसको निष्पादित नहीं करेगा
रिफ्रेश करें यह चला गया है
हमारे पास हमारी वेल्यू है और मैंने वहाँ क्लिक किया
इसने पता लगाया है कि एक वेल्यू यहाँ मौजूद है और यह एको हुआ है
तो यह गेट वेरिएबल की समाप्ति है
अगले ट्यूटोरियल में post पोस्ट वेरिएबल और उसके उपयोग के बारे में सीखेंगे यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है मैं रवि कुमार आईआईटी बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद